और ये सब नमाज पढ़ने के लिए घुसा हुआ हैं देख सकते हैं कोई-कोई बाहर में है और देख सकते हैं दरवाजा के पास काफी सारा चप्पल हैं।

और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आपलोगों को और इसमें काफी सारे आदमी--

यहाँ पे काफी सारे आदमी यहाँ पे जिम वगेरा कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ का लुक भी काफी बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा।